कुछ मुझे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं कुछ गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पत्तियां दिखाई दे रही हैं कुछ पानी दिखाई दे रहा है।

कुछ खम्भे लाइटें लगी दिखाई दे रही हैं।

कुछ मार्ग आदमी खड़ी हुई दिख रहीं हैं कुछ दिख रहीं हैं।

कुछ आदमी खड़ी हुए दिख रहे हैं कुछ खंभे खड़ी हुई दिख रहे हैं कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

कुछ दुकाने दिख रही हैं कुछ डोरिया दिख र--